जो रंग बिरंगी है हरि है और नीली है और व्हाइट है।

जो वाइट कलर की और नीले कलर की है।

और यहां पर बहुत व्यक्ति बच्चे चेयरों पर बैठे हुए हैं और एक टेबल भी है जिस पर फूल रखा हुआ है।

यह एक फार्चून की दुकान है इस दुकान में दो व्यक्ति बैठें हुए हैं।

और इस दीवार पे पीले कलर का रंग हुआ है और एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

और कई प्रकार के खिलौने भी है।

और यहां पर एक टेबल भी है जिस पर बर्गर और प्लेटा भी रखी हुई हैं और दो जूस के गिलास भी रखे हुई हैं।

इस शहर में मार्केट लगी है।